हरियाली देखने को मिल रही है और झरने का पानी बहोत तेजी से नदी में गिर रहा है झरने के पास चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

यह एक नदी है जिस के पास एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है।

यह एक सब्जी मंडी है जिसमें बहोत ही वेराइटी की अलग-अलग प्रकार की सब्जियाँ --

घर के सामने कुछ ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी लगे हुए है आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है।

यह एक लाइब्रेरी है जिसमे बहोत से स्टूडेंट्स कुर्सी पर बैठ हुए हैं और मोबाइल से ऑनलाइन पढाई कर रहे हैं।